इसे भारतीयों स्टेट बैंक इंडिया कया जाता है और ये हर हर तरह के डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये --